नमस्कार !
advanced control of continuous time systems पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि
* दूसरे और उच्च आर्डर के एक continuous time system को कैसे परिभाषित करते हैं
* step और साइन इनपुट्स पर ररेस्पोंस कैसे प्लॉट करते हैं
* bode plot कैसे बनाते हैं
* numer और denom scilab functions का कैसे अध्ययन करते हैं
* सिस्टम के poles और zeros कैसे प्लॉट करते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
scilab 533 के साथ ubuntu 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास से पहले आपको scilab और control systems की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
scilab के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध scilab tutorials को देखें
इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगी कि secondorder linear system को कैसे परिभाषित करते हैं
अतः पहले हमें complex domain variable s को परिभाषित करना है
scilab कंसोल विंडो को खोलते हैं
यहाँ टाइप करें s इक्वल्स टू poly ब्रैकेट खोलें ज़ीरो कॉमा सिंगल कोट खोलें s सिंगल कोट बंद करें ब्रैकेट बंद करें एंटर दबाएं
आउटपुट है s
s को continuous time complex variable की तरह परिभाषित करने का एक अन्य तरीका है
कंसोल विंडो पर टाइप करें:
s इक्वल्स टू परसेंटेज s एंटर दबाएं
अब syslin scilab कमांड का अध्ययन करते हैं
कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को परिभाषित करने के लिए scilab फंक्शन syslin का उपयोग करते हैं
g ऑफ़ s इज़ इक्वल टू 2 बाइ 9 प्लस 2 s प्लस s स्क्वायर
step response प्राप्त करने के लिए स्टेप विकल्प के साथ csim प्रयोग करें और फिर step response प्लॉट करें
अब scilab कंसोल विंडो खोलते हैं
यहाँ टाइप करें : sys कैपिटल g इक्वल्स टू syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा 2 डिवाइडेड बाइ ब्रैकेट खोलें s स्क्वायर प्लस 2 asterisk s प्लस 9 ब्रैकेट बंद करें ब्रैकेट बंद करें
यहाँ c उपयोग होता है क्योंकि हम एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम परिभाषित कर रहे हैं
enter दबाएं
आउटपुट लीनियर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जो
2 बाइ 9 प्लस 2 s प्लस s स्क्वायर से परिभाषित होता है
फिर टाइप करें t इक्वल्स टू 0 कोलन 01 कोलन 10 सेमीकोलन
enter दबाएं
फिर टाइप करें y 1 इज़ इक्वल टू c sim ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें step सिंगल कोट बंद करें कॉमा t कॉमा sys कैपिटल g ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
फिर टाइप करें plot ब्रैकेट खोलें t कॉमा y 1 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
आउटपुट दिए गए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का step response दिखायेगा
अब sine input के लिए second order system response का अध्ययन करते हैं
sine inputs इनपुट की तरह सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कंटीन्युअस सिस्टम तक आसानी से दिए जा सकते हैं
अब हम scilab कंसोल विंडो खोलते हैं
टाइप करें: u 2 इज़ इक्वल टू sine ब्रैकेट खोलें t ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
फिर टाइप करें: y 2 इज़ इक्वल टू c sim ब्रैकेट खोलें u 2 कॉमा t कॉमा sys कैपिटल g ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
यहाँ हम कंटीन्यूअस टाइम सेकंड ऑर्डर सिस्टम sysg उपयोग कर रहे हैं जो हमने पहले परिभाषित किया था
फिर टाइप करें: plot ब्रैकेट खोलें t कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें u 2 सेमीकोलन y 2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें ब्रैकेट बंद करें
निश्चित कर लें कि आपने u2 और y2 के बीच सेमीकोलन लगाया है क्योंकि u2 और y2 समान आकार के रो row वेक्टर्स हैं
enter दबाएं
यह प्लॉट step input और sine input पर सिस्टम का रेस्पॉन्स दिखाता है यह response plot कहलाता है
response plot उसी ग्राफ पर इनपुट और आउटपुट दोनों को प्लॉट करता है
जैसा अपेक्षित है आउटपुट sine wave ही है और
इनपुट और आउटपुट के बीच में phase lag है
amplitude इनपुट और आउटपुट के लिए भिन्न है क्योंकि यह ट्रांसफर फंक्शन से पास किया जा रहा है
यह विशिष्ट underdamped उदाहरण है
अब 2 बाइ 9 प्लस 2 s प्लस s स्क्वायर का bode plot प्लॉट करते हैं
कृपया ध्यान दें कमांड f r e q फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए scilab कमांड है
f r e q को वेरिएबल की तरह प्रयोग न करें
scilab कंसोल खोलें और टाइप करें:
f r इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 001 कोलन 01 कोलन 10 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में है
फिर टाइप करें bode ब्रैकेट खोलें sys कैपिटल g कॉमा fr ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
bode plot दिखता है
अब एक अन्य सिस्टम परिभाषित करते हैं
हमारे पास एक overdamped सिस्टम p इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 9 s प्लस 9 है
अब इस सिस्टम के लिए step response प्लॉट करते हैं
scilab कंसोल पर जाएँ
अपने कंसोल पर टाइप करें:
p इज़ इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 9 asterisk s प्लस 9
और enter दबाएं
फिर कंसोल पर टाइप करें:
sys 2 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा 9 डिवाइडेड बाइ p ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
फिर टाइप करें: t इक्वल्स टू 0 कोलन 01 कोलन 10 सेमीकोलन
enter दबाएं
y इज़ इक्वल टू c sim ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें step सिंगल कोट बंद करें कॉमा t कॉमा sys 2 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन
enter दबाएं
फिर टाइप करें plot ब्रैकेट खोलें t कॉमा y ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स प्लॉट दिखता है
p के रूट्स मूल ज्ञात करने के लिए अपने कंसोल पर टाइप करें
roots of p और एंटर दबाएं
ये रूट्स सिस्टम sys two के पोल्स हैं
सिस्टम के रूट्स या पोल्स प्रदर्शित होते हैं
ओवर डैम्प्ड सिस्टम की तरह इस सिस्टम के लिए समान तरीके से स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करें
g ऑफ़ s इज़ इक्वल टू 2 बाइ 9 प्लस 6 s प्लस s स्क्वायर जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है
फिर g ऑफ़ s इज़ इक्वल टू 2 बाइ 9 प्लस s स्क्वायर जो अनडैम्प्ड सिस्टम है
g ऑफ़ s इज़ इक्वल टू 2 बाइ 9 माइनस 6 s प्लस s स्क्वायर जो अनस्टेबल सिस्टम है
सभी स्थितियों के लिए sinusoidal inputs के लिए रेस्पोंस जाँचें और bode plot भी प्लॉट करें
scilab कंसोल खोलें
सामान्य ट्रांसफर फंक्शन के लिए अंश और हर अलग से उल्लिखित किये जा सकते हैं
मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे
कंसोल पर टाइप करें:
sys 3 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा s प्लस 6 कॉमा s स्क्वायर प्लस 6 asterisk s प्लस 19 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
सिस्टम को अन्य तरीका से परिभाषित करने के लिए टाइप करें
g इज़ इक्वल टू ब्रैकेट खोलें s प्लस 6 ब्रैकेट बंद करें डिवाइडेड बाइ ब्रैकेट खोलें s स्क्वायर प्लस 6 asterisk s प्लस 19 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर अपने कंसोल पर यह टाइप करें:
sys 4 इज़ इक्वल टू syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा g ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
दोनों तरीकों से हमें समान आउटपुट ही मिलता है
6 प्लस s बाइ 19 प्लस 6 s प्लस s स्क्वायर
वेरिएबल sys रेशनल है
इसके अंश और हर अनेक तरीकों से ज्ञात किये जा सकते हैं
sys ऑफ़ 2 numer ऑफ़ sys या numer ऑफ़ g अंश देता है
sys3 या denom ऑफ़ sys फंक्शन्स प्रयोग करके हर की गणना की जा सकती है
p l z r फंक्शन प्रयोग करके सिस्टम के पोल्स और ज़ीरोज़ प्लॉट किये जा सकते हैं
सिंटेक्स है p l z r ऑफ़ sys
प्लॉट पोल्स के लिए x और ज़ीरोज़ के लिए सर्कल्स दिखाता है
scilab कंसोल को खोलें
अपने scilab कंसोल पर निम्न टाइप करें:
sys 3 ब्रैकेट खोलें 2 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
यह रेशनल फंक्शन sys 3 का अंश numerator दिखाता है जो 6 + s है
अन्यथा आप टाइप कर सकते हैं:
numer ब्रैकेट खोलें sys 3 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
सिस्टम 3 का अंश दिखता है
हर प्राप्त करने के लिए टाइप करें:
sys 3 ब्रैकेट खोलें 3 ब्रैकेट बंद करें एंटर दबाएं
फंक्शन का हर denominator दिखता है
आप निम्न भी टाइप कर सकते हैं denom ब्रैकेट खोलें sys 3 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर टाइप करें p l z r ब्रैकेट खोलें sys 3 ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
आउटपुट ग्राफ़ पोल्स और ज़ीरोज़ प्लॉट करता है
यह सिस्टम के पोल्स और ज़ीरोज़ के लिए क्रमशः क्रॉस और सर्कल दिखाता है
यह कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट किया जाता है
इस tutorial में हमने सीखा:
* सिस्टम को उसके ट्रांसफर फंक्शन से कैसे परिभाषित करते हैं
* स्टेप और sinusoidal रेस्पॉन्सेस कैसे प्लॉट करते हैं
* ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और ज़ीरोज़ को कैसे ज्ञात करते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
धन्यवाद